ये एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं ।

यहाँ पर खुला अ मैदान है जहाँ पे बच्चे --

ये एक बड़ा- सा मॉल दिखाई दे रहा है जिसमें काफी लोग आ रहे हैं ।

एक पेड़ पर बैठा हुआ है जो सफेद और ब्लैक का दिखाई दे रहा है नीचे पानी है जो बिल्कुल --

टिशू पेपर रखे हुए है और --

सामने यहाँ पे कैची और पेन दिखाई दे रहा हैं ।

पीले कलर के बॉक्स रखे हुए हैं ।

सामने बोनवीटा के बॉक्स वगैरा रखे हुए है शैम्पू के बॉटल्स रखी हैं ।